बहुत सारा पाइप भी रखा हुआ है और यह अच्छा दिख रहा है।

और एक घर बना हुआ है और खेत में पौधा भी लगाए हुआ--

यह एक सड़क है सड़क पे बारिश हो रहा--

यहां बहोत सा बर्तन रखा हुए हैं और ऊपर से अल्बेस्टर लगा हुआ है ये अच्छा दिख रहा--

एक लड़की खड़ी है डी_जे साउंड भी लगा हुआ है।

एक पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल पंप के चारों तरफ लोग्स का भीड़ लगा हुआ है एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है।

ये धर्मशाला बहोत सुंदर सजा हुआ है इसमें चारों तरफ कपड़े ही कपड़े के सजावट किया हुआ है इधर फूल बैग बगैचे भी है।

बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ।

थोक विक्रेता में बेचा जाता है फल फल में पपाया है।